इस फोटो में कबूतर नजर आ रह--

इस फोटो में गिट्टी नजर आ रही--

इस फोटो में पेड़ नजर आ रा--

इस फोटो में रोड नजर आ रही--

इस फोटो में मशीन नजर आ रही है।